यहां पर एक ब्रिज बना हुआ है जिस पर बहोत सारी गाये हैं।

और यहां पर बहुत सारी छोटी और बहुत सारी बड़ी घंटियां भी टंगी हुई हैं।

और यहां पर बहोत सारी पंखे भी लगे हुए हैं जिनका रंग भूरा है।

यहां पर एक आदमी कुछ काम कर रहा है और उसने अपने हाथ में एक मशीन पकड़ी हुई है।

यहां पर स्टेट बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ है और यहां पर बोहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।